नमस्कार दोस्तों मेट्रिसेस पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप डेटा का इस्तेमाल करके मेट्रिसेस बनाने में लिस्ट्स से मेट्रिसेस बनाने में
बुनियादी मेट्रिक्स ऑपरेशंस में जैसे जोड़ गुणा
मेट्रिक्स का इनवर्स मेट्रिक्स का डिटरमिनंट मेट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स मेट्रिक्स का नॉर्म मेट्रिक्स की सिंग्युलर वैल्यू डिकम्पोज़ीशन निकालने के ऑपरेशंस को क्रियान्वित करने में सक्षम होंगे
इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको लिस्ट्स के साथ शुरुआत करने अरैज़ के साथ शुरुआत करने अरैज़ के भागों को एक्सेस करने पर ट्यूटोरियल को समाप्त करने की सलाह देते हैं
पाइलैब लोडेड के साथ अपना इपिथॉन इंटरप्रिटर शुरू करते हैं
टर्मिनल पर इपिथॉन हाइपेन पाइलैब टाइप करें
सभी मेट्रिक्स ऑपरेशंस अरैज का इस्तेमाल करके करते हैं
अतः अरैज पर सभी ऑपरेशंस केवल मेट्रिसेस पर लागू होते हैं
एक मेट्रिक्स को ऐसे बना सकते हैं टर्मिनल पर टाइप करें एम1 अराय विथिन ब्रैकेट एंड स्क्वेयर ब्रैकेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 एंटर दबाएँ
शेप तरीके का इस्तेमाल करके हम मेट्रिक्स का रूप और रचना पता लगा सकते हैं एम1 डॉट शेप टाइप करें और एंटर दबाएँ
हम आउटपुट देख सकते हैं
चूँकि यह एक रो और चार कॉलम की मेट्रिक्स है यह वन बाई फोर ट्यूपल देता है

एक लिस्ट को निम्न प्रकार से भी मेट्रिक्स में बदल सकते हैं टाइप करें ल1 विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा इन एनोथर स्क्वेयर ब्रैकेट 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8 टाइप करें एम2 अराय विथिन ब्रैकेट 11 माफ़ करें आप को ल1 अराय करना होगा
यहाँ पर विडियो रोकें निम्न अभ्यास की कोशिश करें और विडियो पुनः चलायें
आर्डर 2 बाई 4 की 5 6 7 8 9 10 11 12 एलीमेंट्स के साथ एक टू डायमेंशनल मेट्रिक्स एम3 बनाएं
हल के लिए टर्मिनल पर जाएँ
एम3 ऐसे बना सकते हैं टाइप करें एम3 अराय विथिन क्लोजिंग ब्रैकेट इनसाइड स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर ब्रैकेट 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा इन एनोथर स्क्वेयर ब्रैकेट 9 कॉमा 10 कॉमा 11 कॉमा 12 चलिए अब मेट्रिक्स ऑपरेशंस पर चलते हैं
हम मेट्रिक्स जोड़ना और घटाना आसानी से कर सकते हैं
m3m2 एलीमेंट दर एलीमेंट जोड़ता है जोकि मेट्रिक्स जोड़ है
ध्यान दें दोनों मेट्रिसेस एक ही ऑर्डर की होनी चाहिए
टाइप करें m3m2 और एंटर दबाएँ जिससे कि आप आउटपुट देख सकें
उसी प्रकार से एम3 माइनस एम2 मेट्रिक्स घटाता है जोकि एलीमेंट दर एलीमेंट घटाव है
आप एम3 माइनस एम2 टाइप करके कोशिश कर सकते हैं
अब मेट्रिक्स गुणा देखते हैं
एम3 स्टार एम2 टाइप करें
ध्यान दें अरैज में एम3 स्टार एम2 एलीमेंट वाइज़ गुणा करता है और न कि मेट्रिक्स गुणा मेट्रिसेस में मेट्रिक्स गुणा फंक्शन dot का इस्तेमाल करके करते हैं
टाइप करें डॉट विथिन ब्रैकेट एम3 कॉमा एम2 और एंटर दबाएँ
अतः हम कमांड में एरर वैल्यू देख सकते हैं
आकार बेमेल के कारण गुणा नहीं कर सकते हैं और इसने एक एरर दी
अब मेट्रिक्स गुणा के लिए एक उदाहरण देखते हैं
मेट्रिक्स गुणा करने के लिए हमें ऑर्डर एन एन बाई एम एम और एम एम बाई र र की दो मेट्रिसेस की आवश्यकता है और परिणामी मेट्रिक्स ऑर्डर एन एन बाई र र होगी
अतः दो मेट्रिसेस बनाते हैं जो गुणा के लिए अनुकूल हों
टाइप करें m1शेप और एंटर दबाएँ
मेट्रिक्स एम1 एक बाई चार के रूप की है ऑर्डर चार बाई दो की एक और बनाते हैं अतः टाइप करें एम4 अराय इन क्लोजिंग ब्रैकेट विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट 1 कॉमा 2 कॉमा विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट 3 कॉमा 4 कॉमा विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट 5 कॉमा 6 विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट कॉमा विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट 7 कॉमा 8 टाइप करें डॉट विथिन ब्रैकेट एम1 कॉमा एम4 अतः dot फंक्शन मेट्रिक्स गुणा के लिए इस्तेमाल होता है

जैसा कि हमने अरैज में पहले ही सीखा था फंक्शन identity जो ऑर्डर एन एन बाई न् की एक आईडेंटिटी मेट्रिक्स बनाता है
फंक्शन zeros जो ऑर्डर एम एम बाई एन एन की सभी जीरोस के साथ एक मेट्रिक्स बनाता है
फंक्शन ज़ेरोस लाइक function जो पास की गयी मेट्रिक्स के रूप की सभी जीरोस के साथ एक मेट्रिक्स बनाता है
फंक्शन ones जो ऑर्डर एम एम बाई एन एन की सभी वन्स के साथ एक मेट्रिक्स बनाता है
फंक्शन ओन्स अंडरस्कोर like जो पास की गयी मेट्रिक्स के रूप की सभी वंस के साथ एक मेट्रिक्स बनाता है
इन सभी फंक्शन्स को मेट्रिसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं
अतः अब देखते हैं कि कैसे एक मेट्रिक्स का ट्रांस्पोज़ निकालते हैं टाइप करें प्रिंट एम4 एम4 डॉट ट आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स नामे डॉट कैपिटल ट मेट्रिक्स का ट्रांस्पोज़ देगा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
मेट्रिक्स 4 बाई 4 के इनवर्स का फ्रोबेनियस नॉर्म निकालें मेट्रिक्स है एम5 अरेंज विथिन ब्रैकेट 1 कॉमा 17 डॉट रिशेप टो 4 कॉमा 4 एक मेट्रिक्स के फ्रोबेनियस नॉर्म को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं उसके एलीमेंट्स के पूर्ण स्क्वैर्स के जोड़ का स्कवैर रूट हल के लिए टर्मिनल पर जाएँ चलिए सवाल में दिए गये डेटा का इस्तेमाल करके मेट्रिक्स एम5 बनाते हैं
टाइप करें एम5 अरेंज विथिन ब्रैकेट 1 कॉमा 17रिशेप विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट 4 कॉमा 4 फिर टाइप करें प्रिंट एम5 मेट्रिक्स आ का इनवर्स आ राइसे टो माइनस ओने को रेसिप्रोकल मेट्रिक्स भी कहते हैं इस तरह आ मल्टीप्लाइड बाय आ इनवर्स 1 देगा
एक मेट्रिक्स के फ्रोबेनियस नॉर्म को मेट्रिक्स में एलीमेंट्स के स्क्वैर्स के जोड़ के स्कवैर रूट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं
एक मेट्रिक्स के इनवर्स को फंक्शन इन्व का इस्तेमाल करके पा सकते हैं

यहाँ पर विडियो रोकें निम्न अभ्यास की कोशिश करें और विडियो पुनः चलायें
मेट्रिक्स इम5 का इनफिनिटी नॉर्म निकालें
एक मेट्रिक्स के इनफिनिटी नॉर्म को प्रत्येक रो के एलीमेंट्स के पूर्ण जोड़ में अधिकतम वैल्यू की तरह परिभाषित कर सकते हैं
हल के लिए टर्मिनल पर जाएँ
सुम अंडरस्कोर रॉस स्क्वेयर ब्रैकेट फोर आई इन इम5 कोलोन सुम अंडरस्कोर rowsअपेंड विथिन ब्रैकेट एबीएस विथिन ब्रैकेट isum प्रिंट मैक्स विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट सुम अंडरस्कोर रॉस अच्छा
फ्रोबेनियस नॉर्म और इन्फिनिटी नॉर्म को निकालने के लिए हमारे पास एक और सरल तरीका है और उसे अभी देखें
एक मेट्रिक्स के नॉर्म को norm तरीका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं
मेट्रिक्स इम5 के फ्रोबेनियस नॉर्म को निकालने के लिए हम करते हैं टर्मिनल में टाइप करें नॉर्म विथिन ब्रैकेट इम5 और एंटर दबाएँ मेट्रिक्स इम5 के इन्फिनिटी नॉर्म को निकालने के लिए हम करते हैं नॉर्म विथिन ब्रैकेट im5ordinf हमने जो कोड लिखा था उसकी तुलना में यह सरल है
आर्डोर्ड के बारे में और मुमकिन प्रकार के नॉर्म्स जो नॉर्म नॉर्म फंक्शन बनाता है उनके बारे में अधिक पढने के लिए नॉर्म के प्रलेखन को पढ़ें
अब मेट्रिक्स एम5 का डिटरमिनंट निकालते हैं
एक स्कवैर मैट्रिक्स के डिटरमिंनट को फंक्शन det का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं और एम5 के डिटरमिंनट को ऐसे निकाल सकते हैं अतः टाइप करें डेट विथिन ब्रैकेट एम5 अतः हमें डिटरमिंनट मिल गया
अब आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स पर चलते हैं

एक स्कवैर मेट्रिक्स के आइगन वैल्यू और आइगन मेट्रिक्स को फंक्शन eig और eigvals का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं
चलिए मेट्रिक्स एम5 की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं
टर्मिनल में ईआईजी विथिन ब्रैकेट एम5 टाइप करें
ध्यान दें यह दो मेट्रिसेस का एक ट्यूपल देता है
ट्यूपल में पहला एलीमेंट आइगन वैल्यूज़ हैं और ट्यूपल में दूसरा एलीमेंट आइगन वेक्टर्स हैं
अतः आइगन वैल्यूज़ ईआईजी विथिन ब्रैकेट एम5 एंड इन स्क्वेयर ब्रैकेट 0 से मिलता है
और आइगन वेक्टर्स ईआईजी विथिन ब्रैकेट एम5 विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट 1 से मिलता है
आइगन वैल्यूज़ फंक्शन eigvals का इस्तेमाल करके ऐसे भी निकाल सकते हैं
टर्मिनल पर ईग्वाल्स विथिन ब्रैकेट एम5 टाइप करके
अब सीखते हैं कि कैसे एक मेट्रिक्स की सिंग्युलर वैल्यू डिकम्पोज़ीशन या एस व डी करें
मानिए कि एम एक एम एन मेट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज़ फील्ड क से आई हैं जोकि रीअल संख्याओं की फील्ड या कॉप्लेक्स संख्याओं की फील्ड है
तो यहाँ फॉर्म का एक फेक्टराइजेशन होता है एम उ सिग्मा व स्टार जहाँ उ क के ऊपर एम एम बाई एम एम एक यूनिट्री मेट्रिक्स है मेट्रिस सिग्मा एक डायगनल मेट्रिक्स है और डायगनल पर गैर ऋणात्मक रीअल संख्याएँ हैं और V क के ऊपर की यूनिट्री मेट्रिक्स है जो व व का ट्रांस्पोज़ दर्शाता है
इस फैक्टराइजेशन को एम एम का सिंग्युलर वैल्यू डिकम्पोज़ीशन कहते हैं
मेट्रिक्स एम5 का एसवीडी ऐसे निकाल सकते हैं
अतः अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें एसवीडी विथिन ब्रैकेट्स एम5 ध्यान दें इसने 3 एलीमेंट्स का एक ट्यूपल दिया
पहला उ अगला सिग्मा और तीसरा व स्टार इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा 1
अरैज का इस्तेमाल करके मेट्रिसेस बनाना
मेट्रिक्स के एलीमेंट्स जोड़ना घटाना और गुणा करना
3फंक्शन इन्व इन्व का इस्तेमाल करके एक मेट्रिक्स का इनवर्स निकालना
मेट्रिक्स का डिटरमिंनट निकालने के लिए det का इस्तेमाल करना
फॉर लूप का इस्तेमाल करके और साथ ही फंक्शन नॉर्म नॉर्म का इस्तेमाल करके एक मेट्रिक्स का नॉर्म निकालना
6फंक्शन्स eig और eigvals इस्तेमाल करके एक मेट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालना
फंक्शन एसवीडी एसवीडी का इस्तेमाल करके एक मेट्रिक्स का सिंग्युलर बैल्यूज डिकम्पोज़ीशन निकालना
यहाँ हल करने के लिए आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण सवाल हैं
आ और ब दो अरै ऑब्जेक्ट्स हैं
मेट्रिसेस में एलीमेंट्स वाइज़ गुणा ऐसे कर सकते हैं आ ब मल्टीप्लाई विथिन ब्रैकेट आ कॉमा ब डॉट विथिन ब्रैकेट आ कॉमा ब एलिमेंट अंडरस्कोर मल्टीप्लाई विथिन ब्रैकेट आ कॉमा ब 2
ईआईजी विथिन ब्रैकेट आ विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट 1 और ईग्वाल्स विथिन ब्रैकेट आ आरे थे सामे
क्या यह गलत है या सही
नॉर्म विथिन ब्रैकेट आ कॉमा ord विथिन इस इक्वल टो फ्रो नॉर्म विथिन ब्रैकेट आ के समान है
यह गलत है या सही
उत्तरों को देखें 1
दो मेट्रिसेस आ आ और ब ब में एलीमेंट वाइज़ गुणा आ इंटो ब करके कर सकते हैं
ईआईजी विथिन ब्रैकेट आ विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट 0 और ईग्वाल्स विथिन ब्रैकेट आ एक ही हैं मतलब दोनों मेट्रिक्स आ Aकी आइगन वैल्यूज़ देंगे
नॉर्म विथिन ब्रैकेट आ कॉमा ordis इक्वल टो फ्रो और नॉर्म एक ही हैं चूँकि orderis इक्वल टो फ्रो का मतलब है फ्रोबेनियस नॉर्म
अतः उत्तर सही है
आशा है कि आपने इस ट्यूटोरियल का आनंद उठाया और इसे लाभदायक समझा